यहां सफेद कलर का कार है इस आदमी के हाथ में एक रॉड है।

यह घर सफेद कलर का है।

सफेद कलर का तकिया भी है।

दो टेबल भी रखा हुआ है यहां बहुत सारा कुर्सी है।

यह एक बिल्डिंग का छत है।

यहाँ दो हाथी का पुतला है उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा पहनाया हुआ है।

यहां नीचे में बहुत सारा कागज का पेपर दिख रहा है।

यहां दो आदमी खड़ा है उसके नीचे सफेद कलर का बाल्टी रखा हुआ है।

ऊपर में बहुत बड़ा बड़ा पाइप गया हुआ है जो काला कलर का है।

बगल में एक बाइक का आईना दिख रहा है।

यह रूम बहुत लाइटिंग किया हुआ है।

एक आदमी हेलमेट पहन के आ रहा है।

उपर मैं अल्बेस्टर का छत है यहाँ बहुत सारा गेंदा का माला लगा हुआ है।

यह औरत सब साड़ी पहनी हुई हैं।

यहां बहुत सारा बर्तन भी बड़ा बड़ा रखा हुआ है।

कांच में ओप्पो लिखा हुआ है अंदर में एक आदमी भी दिख रहा है।

बगल मे ये बिजली का तार गया हुआ है।

ऊपर में एक लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ है कांच का शीशा भी दिख रहा है।